और यहाँ भी देख लिए पाँच ठो सीट है यहाँ कार है और पोस्टर है और इंदिरा गांधी का मूर्ति भी हैं।